खालिक के अंदर थोड़ा पानी भी है।

इस ट्राली का कलर ब्लू है।

पीछे काफी ईटों का ढेर लगा हुआ हैं।

पीछे एक आदमी भी खड़ा है।

यहां पर काफी संगत भी खड़ी है।

इस क्रेन का कलर येलो है।

यह पानीपत टू जालंधर टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड है।

यह गोपाष्टवे पूर्व फोन नंबर टू थाउजेंड नाइनटीन को मनाया जाता है।

वोट के ऊपर लड़का लड़की खड़े हैं।

पीछे एक काफी बड़ा वृक्ष है।

इसके हाथ में स्मार्ट वॉच पहनी हुई है।

इसके साथ ही एक ट्रांसफॉरम भी लगा हुआ है।

इसका इंजन ग्रीन कलर का है।